एक छोटी सी बकरी बैठी हुई है।

मुझे इस चित्र में एक बरांडा नजर आ रहा हैं।

योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उस रोड पर एक कार जाते हुए दिखाई दे रही है।

उस ऑफिस के पीछे एक रूम बना हुआ है।

इस स्कूल के बाहर एक बस खड़ी हुई है।

इस रूम में एक खिड़की बनी हुई है उसे पे लाल कलर का पर्दा लगा हुआ है।

मुझे इस चित्र में एक तालाब नजर आ रहा हैं।